यहाँ पर बिल्डिंग है उसे बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर है बिल्डिंग के ठीक बाजू में एक बड़ा सा टावर भी लगाया हुआ है।

सीढ़ियां भी है और एक मूर्ति भी वहां पर नजर आ रही है आजू-बाजू में बहुत सारे पेड़ हैं ऊपर की तरफ आसमान है।